एक छोटा सा बच्चा है रेड कलर शर्ट पहना है वो इधर ही देख रहा सामने बाकी पीछे बहुत सारे लड़के है ।

यहा पे मैं देख पा रही हूं एक साइकिल गाड़ी है। और वहा पर एक ब मछली रखा हुआ है एक बड़ा सा और --